चॉकलेट रूम है यहां बहुत सारे चॉकलेट्स के कॉफी बहुत सारे आइटम आइसक्रीम --

औऔर सब मिलते हैं सिरप मिलते हैं ना और वेज पास्ता वगैर ये एक प्रकार से रेस्टोरेंट है।

यहाँ पर लोडिंग वाला अ मशीन भी है बॉक्स वगैरह लोड करके ले जाते हैं।

वुड ले के जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए फर्नीचर वगैरह।

सब अपने अपने टेबल में बैठ के पढ़ रहे है।